यह दृश्य हमें किसी सैलून का दिखाई दे रहा है।

इस दुकान में हमें कोई भी लोग नजर नहीं आ रहें हैं।

इस दुकान में हमें कोई भी लोग नजर नहीं आ रहे।

इसमें बहोत ही खूबसूरत टेंट लगे हुए हैं।